पीछे हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

व्यक्ति बहुत सारे बस में बैठते दिख रहे हैं।

डांस करती दिख रही--

आते जाते नजर आ रहे हैं एक--

यह महिला फोटो खिंचवा रही है।

शर्मा चाइनीज फास्ट फूड दिख रहा है बहुत सुंदर--

एक व्यक्ति तस्वीर खिंचवा रहा है।

सफेद रंग की चादर बिछी --

इस चित्र में टॉप इन टाउन बेकर्स लिखा हुआ है।

बेकर्स लग रहा है।

इस चित्र में एक प्रोजेक्ट रखा दिख रहा है।

की दुकान दिख रही है।

एक बड़ा बोर्ड लगा है।